जिसमें में एक कार है जो कि पार्किंग की है।

और अ गेट है जो कि ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है और एक कार अ दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक वॉइट कलर की है।

ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है और एक बोर्ड लगा है जो की सफ़ेद कलर का है और उस पर रेड कलर से लिखा है । और नीचे --

और बहुत सारे लोग हैं।

एक बिडिंग दिखाई दे रही है जो कि नीले हरे कलर की है।

सफेद कलर की फूल है और साइड में हरे कलर के फूल हैं।

एक लड़का है जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है और वो जैकेट को प्रेस कर रहा है। एक टेबल है।

ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है दूल्हा-दुल्हन है जो की बैठे हैं और एक पंडित है।

एक लड़के हैं जिसने --

एक और लड़का है जो कि सेल्फी निकार रहा है। उसके हाथ में मोबाइल है।